यहाँ मेरे को एक प्लेस दिख रहा है यहाँ बहोत सारे जेंट्स दिख रहे है एक व्यक्ति ने बैट लिया हुआ है हाथ में एंड एक व्यक्ति कैप लगा रखी है।

यहाँ एक प्लेस दिख रहा है यहाँ बहोत सारे व्यक्ति है और बॉस्केट बॉल देख खेलते हुए नज़र आ रहे है ।

यहाँ बहोत सारी केबल दिख रही है और यहाँ वृक्ष दिख रहा है खजूर का--

मेरे को एक दिख रही है किराना की और यहाँ मेरे को बहोत सारे किराना के समान दिख रहे है अनेक प्रकार के समान दिख रहे है मेरे को यहाँ पर और यहाँ लाइट लगी हुई दिख रही है।

ये एक जिम है और यह बहोत सारे लड़के दिख रहे है और यहाँ वर्क आउट करते हुए नज़र आ रहे है।

और एक गेट के पास व्यक्ति दिख रहा है और व्हाइट कलर की दीवाले दिख रही है एक दीवा-- व्हाइट कलर का दरवाजा दिख रहा है।

यहाँ बहुत अंधेरा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे लाइट लगी हुई है और एक गेट वाइट कलर का दिख रहा है और एक बिल्डिंग बनी हुई है यह एक हैल्थ केयर हॉस्पिटल दिख रहा है मेरे को--

येल्लो और ऑरेंज कलर की एक व्यक्ति ने कुछ हाथ मे ले रखा--